पौधों के बीच से एक रास्ता गुजरता है।

कुछ बिजली के यंत्र दिखाई दे रहे हैं।

कस्टमर बैठा अपने बाल कटवा रहा है।

पीछे टोकरियों में सौंदर्य प्रसाधन के तमाम संसाधन दिख रहे हैं।

उसी के बीच में प्रकाश के लिए लगाए गए लाइटों की ऊंचे ऊंचे खंबे दिखाई दे रहे हैं।

नीचे एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ़ बड़ौदा की ब्रांचो के बैनर दिख रहे हैं।

तमाम सारे चिप्स और बिस्किट के पैकेट्स दिख रहे हैं।

कैफेटेरिआ में कई लोग बैठे हुए हैं।

यह भी एक जिम के अंदर का सीन है।

यहां पे आधुनिक दौड़ने वाली और साइकलिंग की मशीनें लगी हुई हैं।

और उसपे लाइटों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति तबला बजा रहा है।

गानिश सिंस नाइंटिन फिफ्टी सीक्स नाम की दुकान है।

में एक छोर से जल गिर रहा है पत्थरों के ऊपर से।

पास में जल का स्रोत है जिसमें पत्थर उभरे हुए दिख रहे--

एक व्यक्ति काउंटर पर खड़ा है सफेद शर्ट पहने हुए।

किसी शोरूम के अंदर की पार्किंग की जगह है।

क लाल रंग की कुर्सी रखी हुई है।

पूजा की जगह पे पूजा के बने हुए चबूतरे दिख रहे हैं।

जहां पे पीछे लोहे की रेलिंग लगी हुई है।

छत पे लाइटें सजावट पंखे व ए_सी दिख रहे हैं।

डायरियों पे पचास रुपए का डिस्काउंट है।

गार्डन में एक जिराफ का पुतला लगा हुआ है जिसका चेहरा मुस्कुराता सा है।

टिन सेट के नीचे कुछ तमिल या किसी द्रविणियन भाषा में लिखा हुआ है।

तमाम सारे द दर्शन करने वाले लोग उनकी भीड़ दिख रही है।

अग्निशमन यंत्र का छोटा सा हिस्सा बच्चों के बैग दिखाई दे रहे हैं।

पानी का एक छोटा सा तालाब है।

दुकानदार मछलियां बेच रहे हैं।

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की गेट का यह चित्र है।

दो ऋषि मुनियों के प्रतिबिंब अगल बगल खड़े हैं।

पार्किंग के पीछे वाले हिस्से में एक जनरेटर जैसा कुछ लगा हुआ है और फर्नीचर दिख रहा है।

कार कामगारों ने सर पे टोपी पहन रखी हैं और लाल रंग के जैकेट पहन रखे हैं।

खंभे बल्लियां आदि दिखाई दे रहे हैं।

छत से निकले छल्ले भी दिख रहे हैं।

आक्सीजन सिलेंडरों के साथ एक मेडिकल कर्मी है।